नमस्कार दोस्तों getting started with files पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप सीखेंगे फाइल खोलना
लाइन दर लाइन फाइल का कंटेंट्स पढ़ना
एक बार में फाइल का पूरा कंटेंट पढ़ना
लिस्ट में फाइल की लाइन्स जोड़ना और फाइल बंद करना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको lists और for statement के बारे में जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर पूर्वापेक्षा पाइथन ट्यूटोरियल्स देखें
पढ़ने और लिखने हेतु फाइल को खोलने के लिए हम open नामक built in फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं
open फंक्शन file object रिटर्न करता है
mode यह दर्शाता है कि कैसे खुलने वाली है
r read mode के लिए है
w write mode के लिए है
a appending mode का प्रतिनिधित्व करता है और r+ read और write mode दोनों के लिए है मोड निर्दिष्ट करना ऑप्शनल है
फाइल pendulumtxt को टेक्स्ट एडिटर में खोलते हैं
इस फाइल में 2 डेटा कॉलम्स हैं pendulum की length और time
pendulumtxt फाइल इस ट्यूटोरियल के code file link लिंक में उपलब्ध है
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं
pylab package आरंभ करें
terminal साफ करें
pendulumtxt फाइल खोलें
टाइप करें f is equal to open parentheses में quotes में pendulum dot txt
यहाँ mode निर्दिष्ट नहीं है डिफॉल्ट रूप से यह r है
यह देखने के लिए कि यह क्या है टर्मिनल पर f टाइप करें
file object f खुली हुई फाइल का नाम और mode दर्शाता है
r read only modeके लिए है
अब सिंगल वेरिएबल में पूरी फाइल को पढ़ना सीखते हैं
टाइप करें pend equal to f dot read open और close parentheses
हम variable pend में फाइल के कंटेंट को पढ़ने के लिए read method का उपयोग करेंगे एंटर दबाएं
read method का उपयोग करने के लिए हम file object dot read method का उपयोग करते हैं
print parentheses मेंpend टाइप करके देखें कि pend में क्या है एंटर दबाएं
हम देख सकते हैं कि pend में फाइल pendulumtxt का सभी डेटा है
अधिक स्पष्ट देखने के लिए कि इसमें क्या है केवल pend टाइप करें
आप आउटपुट में newline characters भी देख सकते हैं
अब फाइल में लाइन्स की लिस्ट में variable pend को विभाजित करना सीखते हैं
हम लाइन्स की लिस्ट में डेटा की फाइल को विभाजित करने के लिए method splitlines का उपयोग करेंगे
इसके लिए हमें इस लिस्ट को pend_list नामक वेरिएबल में संचित करने की आवश्यकता है
टाइप करें pend_list equal to pend dot splitlines open और close parentheses
टाइप करें pend underscore list
हमें लाइन्स की लिस्ट में डेटा प्राप्त हुआ
pend_list में newline characters जैसे \n नहीं है
ऐसा इसलिए क्योंकि string pend newline characters पर विभाजित होता है
f में खुली फाइल को बंद करें
टाइप करें f dot close open और close parentheses
यह अच्छा प्रोग्रामिंग अभ्यास है कि हमारे द्वारा खोले गए किसी भी file objects को कार्य होने के पश्चात बंद कर दें
यहाँ विडियो रोकें निम्न प्रश्न हल करने का प्रयास करें और पुनःविडियो चलाएं
file object के रूप में f के साथ pendulumtxt को फिर से खोलें
याद रखें कि हमने फ़ाइल को पहले बंद कर दिया है
टर्मिनल पर वापस जाएं
अब लाइन दर लाइन फाइल्स को पढ़ने के लिए आगे बढ़ें
फाइल को फिर से खोलने के लिए टाइप करें
अब फाइल को लाइन दर लाइन पढ़ने के लिए हम for loop का उपयोग करके file object पर पुनरावृति करते हैं
लाइन वार फाइल पर पुनरावृति करें और प्रत्येक लाइन्स प्रिंट करें
टाइप करें for line in f colon एंटर दबाएं
यहाँ लाइन loop variable है और यह कीवर्ड नहीं है
हम कोई अन्य वेरिएबल नाम का उपयोग कर सकते थे लेकिन लाइन काफी सार्थक लगता है दो बार एंटर दबाएं
केवल लाइन प्रिंट करने के बजाय उन्हें line_list नामक लिस्ट में जोड़ते हैं
हम पहले एक emptylist के रूप में line_list को आरंभ करते हैं
टाइप करें line underscore list is equal to open और close square brackets
कोड टाइप करें
four space line underscore list dot append parentheses में line
यहाँ for loop फाइल pendulumtxt को लाइन दर लाइन पढ़ता है
append method line_list नामक लिस्ट में प्रत्येक लाइन जोड़ेगा
हम हमेशा की तरह fclose का उपयोग करके फाइल को बंद कर सकते हैं और फिर से खोल सकते हैं
लेकिन इस समय file object f को छोड़ दें और सीधे for statement में फाइल खोलें
यह हमें फ़ाइल को बंद करने की परेशानी से बचाएगा हर बार जब हम इसे खोलते हैं
देखते हैं कि line_list में क्या है
line underscore list फाइल में newline characters के साथ लाइन्स की लिस्ट है
हम कुछ string methods का उपयोग करके लाइनों से newline characters को निकाल सकते हैं
इसे strings पर आगे के ट्यूटोरियल में कवर किया जाएगा
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
read method का उपयोग करके पूरी फाइल का डेटा पढ़ना
for loop का उपयोग करके file object में पुनरावृति करके लाइन दर लाइन फाइल्स में डेटा पढ़ना
for loop में append method का उपयोग करके list में फाइल की लाइन्स जोड़ना
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
1 open function
2 फंक्शन splitlines क्या करता है
strings के रूप में सभी डेटा एक लाइन में प्रदर्शित करता है
strings के रूप में डेटा को लाइन दर लाइन प्रदर्शित करता है
डेटा को लाइन दर लाइन प्रदर्शित करता है लेकिन strings के रूप में नहीं
और उत्तर हैं
splitlines strings के रूप में लाइन दर लाइन डेटा प्रदर्शित करता है
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद